नीचे सफ़ेद टाइल्स --

जो बोहोत बड़ी है।

चारों तरफ हरे पेड़ दिख रहे हैं।

सभी किताबें अलमारी में रखी है हुई हैं।

पीछे की ओर हरे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।